ये एक बाईक का शो रूम है बजाज बाइक जहां पे देखेंगे नीले कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

हरे कलर के दो फ्लैग बोर्ड लगे हैं नीली कलर की शटर है बाहर कार्टून रखे हुए हैं तीन चार तो लेफ्ट से सीढ़ियाँ गई हैं ऊपर कपड़े टंगे हुए हैं बीच में खंभा लगा है जिसमें काफी सारी वायरें गई --

ये एक हार्डवेर की दुकान है जहाँ पे देखेंगे सामने पेन्ट की तीन चार बाल्टी रखी है व्हाइट वाली और सामने इसके शटर के अंदर काँच लगा हुआ है और ऊपर बोर्ड लगा हुआ है और नीचे काफी सारे बोक्सेस जमे हुए हैं कांच --

अंदर राइट साइड में काफी सारे गुब्बारे बलून में सजाए गए हैं उसके नीचे दो ब्लैक चेयर रखी हैं राइट में गाडी खड़ी --

नीचे काफी सारी बाईकें खड़ी हुई हैं हीरो कंपनी की और नीचे देखेंगे रेड़ कलर कार्पेट बिछे हुए हैं जिन पे गाड़ियाँ खड़ी हैं लेफ्ट राइट दोनों साइड घर बने हुए हैं लेफ्ट वाले घर में ऊपर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं सामने से एक बुजुर्ग आदमी --